यह दुकानें है यहाँ पे पंखा वगैरा मिलते है यहाँ बहोत सारे गाड़ी है और अंदर में आदमी है और यहाँ बड़े गाड़ी भी रखे है।

यह बहोत बड़ा तालाब है यहाँ पे आदमी नहाने आते है मछली पकड़ने आते है।

यहाँ एक पार्किंग करने का जगह है यहाँ पे बहोत सारे गाड़ियां है।

यहाँ पे मगरमच्छ का पुतला है और यहाँ पे गाड़ी भी है और बिल्डिंग भी है ।

और पेड़-पौधे है और यहाँ हरा-भरा दिख रहा है।

यह एक रेलवे फाटक हैयहाँ बहोत सारे आदमी है और बाइक भी है और और लाइट और भी है यहाँ पे --

यह एक घर है यहाँ पे टेबल रखे है यहाँ आदमी रहते है और यहाँ बहोत अच्छा लगता है हमको और यहाँ पे खिड़की दरवाजा भी है लाइट वगैरा भी है।